काफी सारे मतलब पेड़ है फॉरेस्ट टाइप का है।

और ये विजन येलोइस सा है।

ये एक स्टील फैक्ट्री है जहां पे आयरन के और स्टील्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो यूज में आते हैं।

एक बैठने का भी बना रखा है।

और काफी सारे मतलब छोटे बच्चों के टॉयज वगैरह भी हैं।

ये एक कार है जिसका मतलब आगे का बोनट वगैरह सारा कुछ खोल दिया गया है।

और काफी ओल्ड मॉडल है और इसपे एक गैरिज में लाया गया है।

अ ये शायद एक जिम है जिसके सामने एक मिरर भी है।

और एक सर ने सामने मास्क लगा रखा है और श्री महंत हरिवास उच्च विद्यालय टेंथ और ट्वेल्थ का है ये।

पर टुलेट का बोर्ड भी लगा रखा सेकंड फ्लोर पे चौदह सौ स्क्वायर फ़ीट का।

और आगे काफी सारे शायद होटेल्स भी हैं और साथ में ए--

और इसमें काफी ओल्ड एज के भी हैं और सफाई भी चल रही है।

ये कैफेटेरिया है जिसका नाम शायद पिज्जा विंग्स लिखा हुआ है।

और इसके फ्रंट में काउंटर भी है यहां पे शायद सेल्फ सर्विस है इसलिए आउटर में कोई भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है।

अम म्यूजियम है यहां पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं ओल्ड एज के।

शीशे के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स भी है और--

छोटा सा पूल टाइप का बना रखा है। राउटर में काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

यह किसी झील के किनारे का दृश्य है।

और इसी के साथ साथ यहां पे आप अपनी बाइक या गाड़ी का पी_यू_सी भी करवा सकते हैं।

जिसमें कि आगे चल कर विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए जाएंगे।